दाएं साइड में एक डस्टबिन है जिसमें एक लड़का कचरा फेंक रहा है।

यह बनारस की तस्वीर है इस तस्वीर में हम दशाश्वमेध घाट देख सकते हैं।

अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के छत में काफी सारे कपड़े सूख रहे हैं।

इस तस्वीर के आगे की तरफ खाली मैदान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में पीछे तरफ साइबर जोन लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में काफी सारी बिल्डिंग्स नजर आ रही है।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

पहाड़ों में काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक महिला भी है।

यहां में और भी लोग हैं जो शायद इस बोट में घूमना चाहते हैं।

इस बिल्डिंग में काफी सारे कमरें है।

यहां में बहोत हरियाली है।

कुछ टमाटरों में दाग भी लगा हुआ है और कुछ टमाटर बहुत ही अच्छे नजर आ रहे है।

इस त्यौहार को बिहार में बहुत अच्छी तरीके से मानाया जाता है।

इसके ऊपर एक सिंटेक्स ग्रीन कलर का रखा हुआ है।

कपड़ों के साथ हैंकी भी नजर आ रही है।

तस्वीर के दाएं तरफ काफी सारी झोपड़ियां या टिने के घर बने हुए हैं।